किसी एक रूम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे सामने एक लकड़ी की टेबल बनी हुई दिखाई दे रही है आसपास कुछ चेहरे भी दिखाई दे रही है सामने एक बोर्ड बना दिखाई दे रहे हैं साइड में एक कोने में अलमारी बनी हुई दिखाई दे रही है।

इसके आगे हमें दिखाई दे रहा दीवाल के ऊपर एक ऐ_सी है और समने चैर और --

सब्जी मार्केट का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें हमें सब्जी की शॉप दिखाई दे रही है सामने साइड मे एक व्यक्ति टेबल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।